और स बड़े बड़ासा एक स्ट्रीट लाइट और एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है और लोग भी दिख रहे है और गाड़िया भी --

चित्र मे हम म दो-तीन पेड़ देख सकते है और दोस्त --

सफ़ेद रंग की लाइटिंग जल रही है और लाल रंग की सीटे भी खाली पड़ी हुई है।